पेंटिंग कर रहे हैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किये हुए हैं।

और हर यहां पे टेबल चेयर पे एक एक बच्चे हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे गाय और ऑक्स बैठे हुए हैं।

सीमेंट के अंदर घुस के और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहां पे।

हॉल में नीचे बिछा के बहुत सारे महिला एवं पुरुष लड़के एवं लड़कियां बैठे हुए हैं।

जिसका फर्श भूरे रंग का है और जिसकी दिवाले भी भूरी हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं यहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है गिटार और तबला।

गाड़ियों का रंग सफेद ग्रे सिल्वर --

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे एक डेस्क है जो की सजा हुआ है।

जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर मकान है जिसका नाम जन सुविधा केंद्र है हरे रंग की है।

और प आस पास में बाउंड्री है। बाउंड्रींग का रंग सफेद और नीले में है और इलेक्ट्रिक पोल सब घर भी न --

जहां कुछ महिलाएं कुछ पूरष के लिए बनाया गए हुए है।